दोस्तों के साथ अगर अगर हमें कोई अदर पार्टी करनी हो तो हम यहाँ पर बहुत ही आराम से --

ये एक हरा घास का मैदान है।